चित्र में सामने एक रोड बनी हुई है रोड के किनारे कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं साथ ही बहोत सारे लोग भी खड़े हैं सामने एक पंडाल बना हुआ है जोकि लाल और पीले रंग का है।

चित्र में सामने एक रोड बनी वी है। रोड के सामने एक पेड़ लगी वी है जोकि बहुत बड़ी दिख रही है। साथी पेड़ के नीचे दो बायके खड़ी है जोकि काले और लाल रंग की है। पेड़ में एक बोर्ड लगी वी है जोकि सफेद रंग की है।

पीले रंग की है उसके ऊपर कई सारे बच्चे बैठे हैं जिनके हाथ में कॉपी किताब है साथ ही दो बेगे भी रखी हुई है।

मैदान में एक कार रखी हुई है जोकि सफेद रंग की है उसके चके खुले हुए हैं।

साथ ही दो बसें भी खड़ी हैं जोकि पीले रंग की है सामने एक बाइक खड़ी है जोकि काले रंग की है।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

आन बनी हुई जोकि बहुत बड़ी है मैदान में कई तरह के घास उगे हुए है साथ ही एक दो पौधे भी उगे हुए है।

इस चित्र में एक रोड बनी हुई है जो की बहुत लंबी है रोड के बायें साइक कई सारे पेड़ लगे हुए हैं साथ ही उसके दाए साइड --

इस चित्र में सामने एक रोड बनी हुई है रोड में कई सारी गाड़िया खड़ी हैं जोकि काले रंग की है।

छोटे छोटे से पौधे लागे हुए हैं साथ ही खिड़किया बनी हुई हैं जोकि शीशे की हैं जिसके ऊपर एशिया भी लगी हुई है साथो साथ में कार्पेट बिछी हुई है जोकि लाल और हरे रंग की है।

यह एक कमरा बना हुआ है जो कि गुलाबी और ग्रे रंग का है साथ ही सामने एक गेट बनी हुई है जोकि काले रंग की है उसके बगल में म्यूजिक बॉक्स रखा हुआ है जोकि काले रंग का है उसके ठीक सामने एक आईना लगा हुआ है जो कि काफी बड़ा है जिसके आगे से लाइटे लटक रही है साथ ही नीचे --

कई सारे बैग रखे हुए हैं एक महिला भी बैठी हुई है और कई सारे बच्चे खड़े हैं और एक महिला भी खड़ी है।